यहाँ पर दो बैग रखे हैं| यहाँ पर व्हाइट कलर का पेंट हुआ है और यहाँ ब्लैक और येलो कलर के बैलून हैं।

यह एक बड़ा सा मंदिर है। यह वाइट कलर का है।

यहां पर रेड कलर का फ्लोर है। यहां पर ग्रीन ग्रास भी है। यहां पर ब्लैक कलर की एक कार है।

यहाँ पर एक रास्ता है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा है। यहाँ पर एक टेम्पो है।

यहां पर बोहोत सारी लाइट भी है यहां पर ब्लू ऑरेंज ग्रीन रेड कलर की लाइट है।